पेट्रोल पंप पर ट्रैक्टर ट्राली खड़ी हुई नजर आ रही हैं।

पार्क के अंदर एक बोर्ड लगा हुआ नजर आ रहा है।

वीरांगना ऊदा देवी पार्क लिखा हुआ है।

कुछ लोग खड़े होकर आपस में बात कर रहे हैं।

यहां पर एक मेट्रो स्टेशन नजर आ रहा है।

जहां पर कई सारे लोग लाल कलर की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं।

यहां पर कई सारे लोग कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

कई सारे कागज नजर आ रहे हैं एवं पीछे की ओर कई सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

विंडो के ठीक ऊपर एक ए_सी लगी हुई है।

जिसके दाईं ओर एक सफेद रंग की बिल्डिंग है।

यहां पर कई सारी दुकानें नजर आ रही हैं।

बाईं ओर दीवाल पर एक टी_वी लगी हुई है।

एवं एक एरोप्लेन खड़ा हुआ है।

यहां पर कई सारी लाइटे लगी हुई हैं।

एवं यह दृश्य रात का है।

जहां पर एक आदमी एवं एक औरत फोटो खींचाते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर एक घर नजर आ रहा है।

इसका गेट खुला हुआ है अंदर की ओर एक पंखा लगा हुआ है।

दृश्य एक मॉल का है।

एक और दुकान नजर आ रही है जहां पर कई सारे गिलास रखे हुए--

एक आदमी एक कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहा है।

दाईं ओर कुछ खाली जगह नजर आ रही है।

में कई सारे लोग खड़े हुए हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं।

सारी मोटरसाइकिल एवं स्कूटी खड़ी हुई है।

यह सारी औरतें एक फोटो खींचने हेतु खड़ी हुई है।

गेट के बाहर एक आदमी चलता हुआ नजर आ रहा है।

कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं काउंटर के सामने कई सारे लोग खड़े हुए नजर आ--

दाएं ओर कुछ लोग टेबल पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर एक रेस्ट्रोन्ट नज़र आ रहा है जो कि काफी ट्रेडिशनल लुक में बना हुआ है।

बॉस को के डेकोरेशन के रूप में यूज किया गया है।

यहां पर एक पर्यटक स्थल नजर आ रहा है।

कई सारे लोग घूमते हुए नजर आ रहे है।

ये सारे पोस्टर लगे हुए हैं जैसे की टाइम कोचिंग गुड किचन टॉपर्स सी_ए ।

इस तस्वीर में एक प्रतियोगिता मंच दिखाई दे रहा है।

यहां ठीक ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर कावेरी कन्नड़ संघ लिखा हुआ है।

इस फोटो में एक फलों की दुकान नजर आ रही है।

इसमें कई सारे लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं।

राइट साइड में जिग जैग लाइट्स लगी हुई हैं।